झाड़ू लगाती हुई दिख रही है गार्डन में बैठने के चेयर भी रखी हुई दिख रही है।

एक भईया भी खड़े हुए हैं एक बच्चा भी बैठा है उनकी दुकान का--

फुके भी रखे हुए है। पंखा भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अलग-अलग तरह के डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

किला दिखाई दे रहा है जोकि मेहरून कलर का दिख रहा बहोत पुराना पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं बहोत घना पेड़ है।

बादल भी दिखाई दे रहा है जोकि स्काई ब्लू और वाइट कलर का दिख रहा है।

बच्चे पेंटिंग बनाते हुए भी दिख रहे हैं मैडम उन्हें देख रही है पंखा भी दिख रहा है।

बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए है। बहोत घन बादल भी दिखाई दे रहा है। रोड भी दिखाई दे रहा है।